यह एक हॉस्पिटल का रूम है यहाँ पर एक डेस्क रखी हुई है उस पर एक बिसलेरी की बोतल है और एक सर चेयर पर बैठे हुए है उनके हाथ में एक परचा है और एक मैंडम बैठी है।

वो कुछ सिंपल चेर देख रही है और सर के कांधे पर एक गमछा डला हुआ है।

यह हॉस्पिटल का स्टाफ है यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए है उन्होंने चश्मा लगाया हुआ है माक्स पहना हुआ है।

और बस के अंदर भी यहाँ पर रोड में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं एक पुलिस वाला भी खड़ा है और बहुत दूर पर एक लोहे की जाली दिखाई दे रही है ।